यहां पे लोग हैं एक लेडीज है जो बता रही है और पीछे है यहां पे--

खिड़की दिखाई दे री है जो ग्रीन कलर में दिखाई दे री है आसमान है दिखाई दे रा है जो आसमान साफ नजर आ रा है।

चाय पीने की भी कप नज़र आ रहे हैं जो नजर आ रहे हैं।

पंखा स्टैंड कोट का कलर चॉकलेटी है जो कांच पे बनाया हुआ है आसमान साफ है क्लियर है धूप है और यहां पे भी स्कूटी और फोर व्हीलर खड़ी हुई है।

चार पंखे हैं और दो ट्यूबलाइट चालू है और सो वाले भी चालू है लाइट वहां --

यहां पे गेम का दिखाई दे रहा है जो यहां पे बच्चे वो गेम खेलते हैं यहां पे देखो यहां पे बैठ के भी गेम खेला जा सकता है यहां पे --

हुआ है जो ग्रीन कलर के है दरवाजा है जो लाल कलर का दरवाजा है।

और उसके बाद दीवार जो है वो जो बैकग्राउंड है और यहां पे राइस में--

जो लोग सफर कर रहे हैं यहां और यहां पे बादल हैं आसमान बहुत खूबसूरत है और आजू बाजू हरियाली है जो छोटे छोटे घास हैं और ज्यादा अच्छा लग रहा है।

जो झाड़ पांच हैं और आसमान है आसमान साफ है दूर देखें तो जो हरा भरा नजर आ रहा है।

जो झाड़ियां नजर आ रही हैं और उसके आगे देखें तो बिल्डिंग नजर आ रही जैसे कि वहां पे शहर है।

बिल्डिंग है जो पिंक कलर की है जो आज सूबा हरियाली है झाड़ है झाड़ हरे है और खम्बे है जो लाइट का काम आते हैं।

आसमान है आसमान में खुला है और झाड़े हैं जो झाड़े ग्रीन कलर के हैं दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे काम चालू कर के हैं वर्कर हैं जो यहां पे स्लैब डालने का काम दिखाई दे रहा है।

एक दुकान दिखाई दे रहा है जो यहां पे नजर आ रहे--

और यहां पे पर्दा है जो दो किसम के पर्दे हैं और यहां पे है पंखा जो लाइट --

सालों से पंखा बंद है और यहां पे ऊपर जाने का रास्ता भी नजर आ रहा है। यहां पर दो पंखे नजर--

कूलर है जो कूलर पत्रे की नजर आ रही है और यहां पे इसके आगे भी एक औरत बैठी हुई है।

पुल नजर आ रहा है बहुत छोटा सा पुल है यहां पे लोग बहुत सारे आए हुए हैं।

यहां पे ट्रैक्टर नजर आ रहा है ट्रैक्टर का मालिक नीचे उतर रहा है ट्रैक्टर की टायर बड़े है और ट्रैक्टर का कलर --

एक लाइट है जो बहुत चमक रही है और यहां पे नजर आ रहा है और यहां पे एक झील रुकी हुई है।

मिठाई की दुकान है जो यहां पे अनेक प्रकार की मिठाई है और यहां पे ना प्राइस --

यहां पे हर एक झाड़ नजर आ रही है जो एक रास्ता है जो रास्ता उस पार जाता है और वहां पे दूर देखें तो--